बताई जा रही है।

हुई है यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे बहोत ही अच्छा --

मम करने के लिए बहुत ही अच्छा-सा यहां पे बनाई गई है।

डिजाइन बनी हुई है इसके आगे जाके आने के बाद गाछी - वृक्ष सब बहुत ज्या लगी है।

यहाँ पे एक एल.ई.डी. है | नीचे सामान रखी हुई है | यहाँ पे काफी लोग भी खड़े हैं | यहाँ --

आदमी खड़ा है जो पहाड़ पे हाथ रखे हुए हैं यहाँ पे टूटी-फूटी पत्थर से भी दिख रहे हैं।

और यह बहुत ही सुंदर जगह है | यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छे-अच्छे लाइटें लगी हुई --

यहां पे पारक की तरह दिख रही --

यहाँ के बगल में कुछ दुकाने हैं और यहाँ के बगल में पुल की तरह बनी हुई --

और फिर लोग चलन जा रहे हैं |

यह बहुत ही सुन्दर जगह है |

और सभी अपने-अपने काम कर रहे --

बहुत सी सारी पंछी बैठे हुए हैं।

और यहाँ के बगल में काफी सारे सामने रखी हुई --

यहाँ बहोत ही सुंदर जगह है यहाँ की जगह बहोत ही काफी अच्छी है।

यह जगह बहोत ही सुंदर औरत की तरह दिख रही है।

यह बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और यह बिल्डिंग बहुत ही काफी लंबी है।

और यहाँ पे एक बाल्टी भी रखी --

इसटेंड़र भी है और यहां पे काफी लोग --

कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ पे काफी सारे लाइटे लगी हुई है यह --

यह बहुत ही सुंदर जगह है यहां पे काफी सारे वृक्षे लगे हुए हैं।

रखे हुए हैं यह बहोत ही सुंदर दुकान है और यहाँ पे काफी सारे सामाने--